वाटर देख रहे हे इधर हीच वाटर ही देख रहे हे ये जाडा देख रहे हैं।

आदमी देख रही एक कार देख रही बहार शप देख रहे हम--

एक बड़ा शॉप देख रहे हम शॉप में ए--

बड़ा पार्क हे हीच वाक करने को आया सो बार--

स्पीकर हे इधर हीच स्टेचू देख रहें बहोत बड़ा हाल --

चेयर्स दाने ए चेयर में फॉर आदमी बेठे दो चेयर्स --

एक बिल्डिंग देख रहे हम बिल्डिंग ऐ एक--

अब टू फ्लोर का बड़ा बिल्डिंग हे इधर बिल्डिंग --

एक कांउटर हे ए झूमर हे लाइट्स हे बहुत ए--

इधर एक मंदिर है मंदिर में बहुत आदमी हैं --

स्टे स्टेज में एक कलर कलर फूल से डेकोरेशन कर--

इधर इछ एक पोलिस का गाडी देख रही हु इधर--

इधरिच एक दी सिटी कैफे खोलने के शॉप है इधरिच इनका एक का आदमी खडे रहे ए आई लव --

भंडी चल रही है एक स्कूटर चल रहे है तीन गाड़ी एक बड़ा गाड़ी चल रही है गुड्स कैरियर का गाड़ी --

इधर हीच एक बस स्टेंड हे बस स्टेंड में बस देख रीया--

एक शॉप देख रहें हम एक किराना स्टोर इधर येच एक मसाला--

अधरीच काटन से डेकोरेशन किया ये रेड कलर का है इधरिच एक टेबल में--

इधारीच बिल्डिंग देख रहे है हम ए एक बिल्डिंग नया बिल्डिंग है एक बिल्डिंग --

होगया ये ये और बिल्डिंग देखर हे है हम इधर छ जादा देख रहे एक जाड़ा देख रहे एक--

और हेयर का और मेकअप का अब ब्राइडल मेकअप और हेयर स्टाइल --

अ क्रीम हे क्रीम दिख रही हे इधर हीच एक सोफा हैं।

डिजाइन मस्त हे एक पेंट बोत सुन्दर दिख री --

इधर से एक सिलेंडर देख रही इधर से एक शॉप देख रही है शॉप --

टेबल देख रहे इधर एक सिस्टम और एक--

बहुत छेल हैं दरिच ऑइल डब्बा का हैं बड़ा आयल हैं छोटा आयल हैं डिफ दूसरा दूसरा कंपनी का आयल हैं।

ये एक ऑफिस है और ऑफिस में फाइल्स देख रहे है हम लाइट्स देख रहे है हम। --

दरिच और छेर में बैठ के काम कर रहे हैं दरिच फाइल देख रहे हैं हम बहुत फाइल हैं दरिच ओस काम कर--

ये इधर हीच ये हम कुत्ता देख रिहम ये वाइट कलर कुत्ता हैं।